और सफेद दिवाल बाटे बगल में एक आलमारी रखी बा --

एक लड़का सामने देखत है और लाल रंग की चेयर रखी हैं।

और लाल रंग से यहा खम्भा ब पिलर बनाया गय बा--

ओ ई हरे रंग का हरा भरा घास का पूरा बाग है।

ई एक किराना के दुकान बा जहां--

बगल में एक शटर लगा बा जोन छोटा से दुकान बा।